यहां पर आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत--

यहां पर आप देख रहे हैं देख सकते हैं कि यहां पे कार के शोरूम से बाहर से पिक्चर ली गई है।

यहां पर आप देख सकते हैं ये गाड़ियों गैरेज की फोटो है जहां पर--

यह शॉप की फोटो पिक्चर ली गई है जहां पर अंदर--

लीची है अंगूर है एप्पल है।

कि कई ली कई बच्चे डांस कर रहे हैं और वो भी राष्ट्रीय गीत पर।

हाटों भी खड़ा दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

यहां पर पार्क दिखाई दे रही है।

और एक पास से छोटा सा मकान डाला हुआ है जहां पर एक बैठने के लिए--

यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अ अ शॉप दिखाई दे रही है जो जहां पर बहुत सारी --